आगे में देखने में पेड़-पौधे में रंग पेंट किया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है देखने पीला रंग है और लाल रंग है बहुत अच्छे लग रहा घर देख --